और एक शेड भी यहाँ पर बना हुआ है।

पीछे की तरफ एक बोहोत ऊंची बिल्डिंग है और एक लोहे का --

लगा हुआ है इस पर एक गद्दा है गद्दे के ऊपर एक पन्नी बिछी हुई है।

के उप पास में ऊपर चढने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं।

ये एक बहोत बड़ी ऊंची बिल्डिंग है ये क्रीम कलर की है बाहर की तरफ कुछ गाडियाँ खड़ी हैं।

एक व्यक्ति के पीछे एक पेड़ है हरे रंग का और सामने की तरफ एक लाल रंग की बिल्डिंग है।

कैफ़े है इसमें बाहर की तरफ काला बोर्ड है और ऊपर पीले रंग से कैफे --

पर बहोत ऊंचा है यहाँ बाहर की तरफ कुछ महिलायें --

लाल रंग का इसके बाहर स्कूल के अंदर बहोत बड़ा ग्राउंड है यहां पर कुछ बच्चे--

खड़े हैं जिन्होंने अलग-अलग रंग के कपडे पहने हुए हैं और कुछ हरी घास भी है।

यहाँ पर बहोत सारी मोटरसाइकिल हैं कुछ हरे-हरे --

ये एक गार्डेन है यहाँ पर चारों तरफ हरे-हरे पेड़ हैं।

पास में ही कुछ लाल रंग के गमले रखे हुए हैं उनके अन्दर रंग-बिरंगे फूल लगे हुए हैं।

और ऊपर की तरफ झल्लर लटक रहे हैं।

ये एक बहोत बड़ा पार्क है यहाँ पर --

चारो तरफ हरे-भरे पेड़ हैं हरियाली नजर आ रही है।

दूसरी महिला उसे ईनाम दे रही है।

सामने की तरफ एक बहोत बड़ी लाल रंग की मछली रखी हुई है दूसरी तरफ बहोत सारे आदमी है और नीचे धरती पर--

चादर पर बहोत सारी मछलियाँ रखी हुई हैं।

फीमेल जर्नल वार्ड लिखा हुआ है यहां पर दो रोशनदान भी है बड़े बड़े।

जालियाँ लगी हुई हैं कुछ खम्भे भी लगे हुए हैं।

ये एक सी एन जी स्टेशन है जहा पर गाडियों में सी एन जी भरी जाती है।

उसका बोनट आगे ऊपर हुआ हैं।

आगे अ कुछ स्कूटी गाडियाँ खड़ी हैं बड़े-बड़े पेड़ भी नज़र आ रहे हैं कुछ बड़ी बिल्डिंगे भी हैं पीछे की तरफ --

ये एक पार्क है रात के समय चांद नजर आ रहा है सामने और--

खड़े हुए हैं अलग रंग के कपडे पहने हुए --

स्कूटी का शोरूम है यहां पर बहोत सारी रंग बिरंगी स्कूटी --

ओर लोहे के खम्भे लगे हैं और इनमे लाइटें भी लगी हुई हैं।

यहाँ पे कुछ लोगों ने गढ़ा खोदा हुआ है एक व्यक्ति --

इन्होने लोहे के पिलर को पकड़ रखा है।